एक मेन गेट हे आऊ ऊ गाड़ी मन हे दो तीन ठिन दराज मन हे।

एहा मेडिकल कॉलेज के दूसरा साइड से जगह एजहाँ बहुर सारे पेड़ मन हे ।

ए हा एक ठीन बिल्डिंग एजहाँ बहोत सारा लाइट हेएहा बहुत एहा आसमान हे।